और सामने में बहुत ही भीड़ है और पीला रंग का एक औरत साड़ी पहनकर डान्स कर रही है।

और एक चर्च का तस्वीर है यहाँ क्रॉस-मार्क किया हुआ है और सामने में एक छोटा-सा स्टेज बनाया हुआ है जहां पर एक आदमी गाना गा रहा है।

फूल का डेकोरेशन किया हुआ है और नीचे बहुत सारे लोग पूजा प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं।

यहाँ एक सामने में एक सफेद बिल्डिंग दिख रहा है और यहाँ कपड़ों का शोरूम है ऊपर में बाहर रेड कलर का बोर्ड में कपड़े का एडवर्टाइजमेंट भी है।